दोस्तों यहां पर कपल्स के साथ भी आते हैं सिंगल भी आते हैं मूवी देखते हैं बढ़िया हॉट सीन देखते हैं गर्लफ्रेंड के साथ मजे लेते हैं।

इस बिल्डिंग में कांच लगे हुए हैं ये कांच बहोत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं धन्यवाद --

ग्रीन फील्ड एरिया का निर्माण करते हैं धन्यवाद।

अपनी अलग अलग ड्रेसेस पहन के फोटो खिंचवाते हैं।

दोस्तों आप भी आइए और मजा लीजिए।